दीवार जो है बेम्बू से बनाया हुआ है।

सामने में एक पेड़ देखने को भी मिल रहा हैं जो आधा वाइट कलर पेंट किया हुआ हैं टेंट भी हैं एक।

पीछे में एक पानी से उड़ने का सीढ़ी भी लगा हुआ है।

और एक लड़की भी देखने को मिल रहा है आगे में।

इस पिक्चर में बहुत सारा छोटा छोटा लाइट लगा हुआ है।

तस्वीर में बार्बर एक बच्चा का बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक दीवान सोफा है ब्लैक कलर का डिजाइन है।

दरवाजा भी देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे वायरस देखने को मिल रहा है और और ऊपर में बहुत सारे पाइप्स भी देखने को मिल रहा है लोहा--

तस्वीर में एक लड़का है जो हाथ फोल्डिंग करके उठा हुआ है।

ये एक मिशीन है जो पत्थर फोड़ने में काम आता है।

और एक लड़का ऊपर में खड़ा हुआ है।

लाइट्स चमकता हुआ देख रहा है और ये रात का समय है।

मिरर के सामने बहुत सारा बोतल्स देखने को मिल रहा है वाटर स्प्रे भी देखने को मिल रहा है।

कराई में बहुत सारा मटर पका हुआ है और चम्मच भी रखा हुआ है।

दो दुकान है एक दुकान में एक लड़का देखने को मिल रहा है इसके अंदर बहुत सारा सामान--

इस तस्वीर में रोड देखने को मिल रहा है।

ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में छे लरका लोग के चेयर में बैठा हुआ है।

कोने में एक फैन है सी_सी कैमरा भी लगाया हुआ है टेबल में वाटर बोतल दे रखा हुआ है।

बहुत सारे घर भी देखने को मिल रहा है घर के ऊपर बहुत सारा सोलर प्लेट लगाया हुआ है।